जिसने ब्लैक कलर की टीशर्ट और पैंट पहनी हुई --

जोकि शायद कपडे की दुकान है और इस --

की तरफ दीवार पे हार्ट शेप में बैलून्स को सजाया गया है।

यहाँ पे बड़े-बड़े हरे-हरे दिखाई दे रहे है।

बहोत अच्छी अलग-अलग किस्म की यहाँ पे लाइटें लगाई गई है।

काफी सज सजावट की हुई है।

और यहाँ पे काफी बड़े-बड़े दिखाई दे रहे हैं।

बड़ी-सी मशीन है और यहां पर कुछ बनाया जा रहा है।

है और मॉल का जो बोर्ड है वो रेड --

और यहाँ पे फोटोग्राफर फोटो क्लिक कर रहे हैं।

और नीला आसमान यहाँ पे दिखाई दे रहा है।

और ये बहुत ही अच्छा नजारा है देखने में।